जिसमें ऊपर सफेद और नीले कलर की टेंट लगा हुआ है और खंभे बने हुए हैं जो--

बहुत सी पोटलिया दिख रही है ऊपर बड़ा--

सामने एक रूम है जीसमें एक बेड डला हुआ है जिसमें सफे--

मेरे सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें अभी अ--

सामने एक माल गाड़ी खड़ी हुई है जो --

सामने एक ग्राउं ग्राउंड है जिसमें कुछ टेबल रखी हुई है।

रखी हुई है जो ब्लैक कलर की है ऊपर छत सफेद कलर की है जिसमें सफेद--

और पंखे लगे हुए हैं और साइड की दीवार क्रीम कलर की हैं।

सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसमें नीचे पीली मिट्टी और कहीं कहीं हरि घा--

सामने कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और सामने एक बड़ा सा गेट बना हुआ है जो सफेद कलर का है जिसके सामने--

अह सामने एक बस स्टैंड है जिस पे कुछ कुर्सियां बनी हुई हैं।

हैं जो स्टील की हैं और कुछ आदमी बैठे हुए हैं और सामने एक बस खड़ी है।

उनके पेड़ काले कलर के है और पीछे दीवाल और टेबल है जिसपे एक लैपटॉप रखा हुआ है और ऊपर--

और बहुत से आदमी दिखाई दे रहे हैं और --]

हरी हरी घास लगी हुई है ऊपर नीला और सफेद आसमान दिख रहा है और--

उस खंबे दिखाई दे रहे हैं जिनमें तार लगे हुए हैं और कुछ--

नीचे कुछ गमले रखे हुए हैं और एक साइकिल खड़ी हुई है। दो खंबे बने हुए हैं जो सफेद कलर के है ओर घर--

सामने एक अ बिल्डिंग की गैलरी दिख रही है जिसकी साइड की दीवारों पर पीले नीचे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही और दो कुर्सी दिखाइ --

सामने एक रिवर दिख रहा है जिसके ऊपर चोटियां बनी हुईं हैं जो सफेद कलर का है और उसके सामने टीने लगी--

सामने एक कुर्सी रखी हुई है जो लंबी है और उसके बाजू में कुछ छोटी-छोटी कुर्सियां रखी हुई हैं।

एक नीली दीवाल दिख रही है दूर कुछ पेड़े दिखाई दे रही है ऊपर सफेद आसमान दिख रहा है।

अ टंगे हुए हैं और नीचे कुछ कुर्सी है जो नीली है और साइड में गेट लगा है जो काले कलर का है।

मुझे दिखाई दे रही है और दिवाल है।

बहोत ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही हैं ऊपर नीला सफेद आसमान देख रहा है और सामने एक--

सामने एक हॉल है जिसमें नीचे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं ऊपर सफेद छत है जिसमें--

सामने एक नदी दिखाई दे रही है जिसका पानी पिला पिला है और आ बहोत सी--